मुझे एक घर दिखाई दे रहा है। जिसमे एक --

नीले और वाइट कलर से कुछ लिखा हुआ है। अंदर --

एक ड्रैगन खड़ा हुआ है और वहाँ पे बहोत सारे बच्चे घूम रहे हैं और वहाँ पे बहोत सारे पेड़ भी लगे हुए हैं और --